बाहर की तरफ एक रेलिंग दिखाई दे रही है बलून लगे हैं बलून तीन कलर के हैं हरे ऑरेंज और सफेद कलर के बलून दिखाई दे रहे हैं लाइट भी दिखाई दे --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

सड़क दिखाई दे रही है। बस के आगे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है। दो तीन आदमी बस के आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने अपने बाल खोलें हुए है हाथ में उनके त्रिशूल है तथा मूर्ति काफी बड़ी दिखाई दे रही है काफी सारी भीड़ दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के पीछे एक खंभा दिखाई दे रहा है। खंभे के पीछे एक बड़ा-सा खेत दिखाई दे रहा है।

ऑटो का रंग नीला है नीले ऑटो के बगल में काला हरा --

एक कुर्सी नजर आ रही है बाकि काले रंग की जिम की मशीनें नजर आ रही हैं। लाइट चली गयी है। काँच का दो --